राइट में एक बॉक्सिंग पैक है| राइट में एक ब्राउन कलर का गेट भी है| आगे में एक खिड़की है जिसमे सीसा नहीं है| आगे एक सीसा भी है बड़ा सा|

यह एक एयरटेल कपनी है इसमे ऊपर एयरटेल लिखा हुआ है बाहर दो आदमी खड़े है आगे एक बड़ा सा सीसा लगा है जिसकी परछाई में दो स्कूटी पीछे एक ऑटो है आगे एक अंदर भी खड़ा आदमी है।